अन्दर एक आदमी है जिसका फेस ब्लर आ रहा है।

पीछे बोर्ड पे लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी लिखा हुआ है जो कि बैनर पे लिखा हुआ है।

जहां पे दो टेबल ब्लू कलर के हैं और दो टेबल रेड कलर के रखे हुए हैं।

जिसपे बहोत सारे लड़कों को कोई खेल खेलते देखा जा सकता है।

ये एक ग्राउंड जैसा दिख रहा है और इसमें एक सड़क भी दिखाई दे रही है।

इस पर इंडिया के फ्लैग भी देखे जा सकते हैं और कुछ बच्चे जैसे मार्शल आर्ट सीख रहे हो।